मारुति सुजुकी नाम की कंपनी है या--

और इधर एक साइकल खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ लोग ऊपर छत के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत हरी हरी घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे ट्रैफिक जाम वाला सिग्नल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक चारपहिया खड़ी हुई है और यहां पे एक बोर्ड रखा हुआ है।

और इस गुफा के आस पास कुछ पौधे हैं गुफा के ऊपर कुछ झाड़ियां दिख रही है।

ट्रेन के ऊपर लाल कलर का और व्हाइट कलर का पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह रिक्शा है जिसमें व्यक्ति को ले जाकर घर छोड़ा जाता है।

बहोत सारे रिक्शे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो की लाल कलर के हैं।

और चीज़ें दिखाई दे रही है।

यह एक ट्रेन है जिसमें बहोत लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं।

एक खिड़की से झाख रहा ये है और एक बैठा हुआ है अंदर।

यह एक दुकान है जिसमें वीवो की फोन रखे हुए हैं।

यह एक सड़क है जहां पर बहुत सारी बस और गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक स्कूल हैं और यह लाल व्हाईट कलर से पुता हुआ है।

झूमड़ बहुत सारी गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है।

और यहां पे छोटे छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे--

एक बेतवा है जहां पे पानी भरा हुआ है।

पेड़ो पे बासो पे टहनियां लटकाई गई हैं।

यहा गॉड जी की मूर्ति दिखाई दे रही--

के बगल में शटर भी लगा हुआ है।

हरी हरी घास भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

गमले में बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं।

और यहां पे बहुत सारे जिम करने वाले रखे हुए हैं।

यह लाल कलर व्हाइट से पुता हुआ है।